नमस्कार दोस्तों लीस्ट स्कवैर फिट पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप दिए हुए बिन्दुओं के समूह के लिए लीस्ट स्कवैर फिट लाइन बनाने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको प्लॉट को परस्परता से इस्तेमाल करने फाइल्स से डेटा लोड करने और अरैज़ के साथ शुरुआत करने पर ट्यूटोरियल को समाप्त करने की सलाह देते हैं
चलिए इस ट्यूटोरियल को एक उदाहरण की मदद से शुरू करते हैं
फ़ाइल pendulamटीएक्सटी के डेटा का इस्तेमाल करके ल वर्सस ट स्कवैर के लिए एक लीस्ट स्कवैर फिट लाइन बनाएँ
हमारे पास सरल पेंडुलम परीक्षण से निर्मित एक इनपुट फ़ाइल है
इसमें डेटा के दो कॉलम्स हैं
पहला कॉलम पेंडुलम की लम्बाई है और दूसरा पेंडुलम का अनुरूपी समय क्रम है
जैसा कि हम जानते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड का स्कवैर उसकी लम्बाई के सीधा अनुपाती है हम ल वर्सस ट स्क्वेयर प्लॉट करेंगे और उसे जाँचेंगे
फ़ाइल इनपुट को रीड करने के लिए और डेटा को पर्स करने के लिए हम लोडटीएक्सटी फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं
टर्मिनल पर जाएँ
हम देख सकते हैं कि ल और ट दो क्रम हैं जो लम्बाई और समय वैल्युस क्रमशः रखते हैं
पहले ल वर्सस ट स्क्वेयर प्लॉट करते हैं
टर्मिनल में टाइप करें इपिथॉन हाइपेन पाइलैब टाइप करें ल कॉमा ट लोडटीएक्सटी विथिन ब्रैकेट्स इन डबल क्वोट्स स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश pendulumटीएक्सटी कॉमा unpackTrue थेन ब्रैकेट क्लोज्ड
फिर टाइप करें ल फिर टाइप करें ट हम देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रत्यक्ष रेखीय प्रवृत्ति है किन्तु हमें इन्हें जोड़ती हुई एक सीधी लाइन नहीं मिली
इसलिए हम एक लीस्ट स्कवैर फिट लाइन बनायेंगे
हम पहले दो मेट्रिसेस त्स्क और आ बनायेंगे
फिर म् और सीसी की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एलएसटीएसके फंक्शन इस्तेमाल करेंगे
टाइप करें त्स्क ट स्टार ट एंटर दबाएँ टाइप करें प्लॉट विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा त्स्क कॉमा विथिन सिंगल क्वोट्स बो एंटर दबाएँ
अब ल वैल्यूज़ के साथ आ मेट्रिक्स Aबनाते हैं
पहली रो के लिए इल वैल्यूज़ और दूसरी रो के लिए वन के साथ हम पहले 2 इनटू 90 मेट्रिक्स बनायेंगे
फिर उसका ट्रांस्पोज़ लेंगे
टर्मिनल में टाइप करें इंटर अंडरस्कोर मैट अराय विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा ओन्स अंडरस्कोर लाइक विथिन ब्रैकेट्स ओने थेन क्लोजिंग ब्रैकेट अब हम एक एरर देख सकते हैं
एरर ओने अंडरस्कोर लाइक फंक्शन में है हमने इल के जगह ओने टाइप कर दिया है अतः आपको यहाँ इल रखना होगा
हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट मेट्रिक्स है
अब हमें ट्रांस्पोज़ की आवश्यकता है
अतः टर्मिनल पर टाइप करें आ इंटर अंडरस्कोर matट आ टाइप करें और एंटर दबाएँ
अब हमारे पास आ और त्स्क दोनों मेट्रिसेस हैं
हमें केवल एलएसटीएसके को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है
टाइप करें रिजल्ट एलएसटीएसके विथिन ब्रैकेट्स आ कॉमा त्स्क जहाँ एलएसटीएसके का मतलब है लीस्ट स्क्वेयर उत्तर वैल्यूज़ का एक क्रम है
इस क्रम में पहला आइटम मेट्रिक्स प है अर्थात म् और सीसी की वैल्यूज़
टाइप करें एम कॉमा सी रिजल्ट विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट्स 0
फिर टाइप करें एम फिर टाइप करें सी अतः आप आउटपुट देख सकते हैं
अब हमारे पास एम और सी है
अतः हमें ट स्कवैर की उपयुक्त वैल्यूज़ बनाने की आवश्यकता है
टर्मिनल पर टाइप करें त्स्क अंडरस्कोर फिट एम स्टार ल प्लस सी टाइप करें प्लॉट विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा त्स्क कॉमा विथिन सिंगल क्वोट बो इस प्लॉट को टाइप करने से पहले हमें क्लीयर फंक्शन टाइप करना होगा

टाइप करें प्लॉट विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा त्स्क कॉमा बो अब मैं प्लॉट देख सकता हूँ टाइप करें प्लॉट विथिन ब्रैकेट्स ल कॉमा त्स्क अंडरस्कोर फिट कॉमा र हमें इल वर्सस ट स्कवैर का लीस्ट स्कवैर फिट मिलता है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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 1
मेट्रिसेस का इस्तेमाल करके एक लीस्ट स्कवैर फिट बनाना
2एक लीस्ट स्कवैर फिट लाइन बनाने के लिए फंक्शन lstsq इस्तेमाल करना
यहाँ हल करने के लिए आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं
1ओन्स अंडरस्कोर लाइक 1 कॉमा 2 कॉमा 3 क्या देगा अराय 1 कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 कॉमा 1 इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स
फिर स्क्वेयर ब्रैकेट्स 1 पॉइंट 0 कॉमा 1 पॉइंट 0 कॉमा 1 पॉइंट 0 एरर 2
उ वर्सस व का प्लॉट फैले हुए बिन्दुओं का समूह है जो एक रेखीय प्रवृत्ति दर्शाता है
आप उ वर्सस व की लीस्ट स्कवैर फिट लाइन कैसे ज्ञात करेंगे
और उत्तरों को देखते हैं 1
फंक्शन ओन्स अंडरस्कोर लाइक इन 1 कॉमा 2 कॉमा 3 बनाएगा अराय 1 कॉमा 1 कॉमा 1
अतः यह पहले सवाल का उत्तर है
2कमांड्स का निम्न समूह उ वर्सेस व के लिए लीस्ट स्कवैर फिट लाइन बनाएगा आ अराय विथिन ब्रैकेट्स उ कॉमा ओन्स अंडरस्कोर लाइक विथिन ब्रैकेट्स uट रिजल्ट एलएसटीएसके विथिन ब्रैकेट्स आ कॉमा व एम कॉमा सी रिजल्ट विथिन स्क्वेयर ब्रैकेट्स 0 एलएसटी अंडरस्कोर लाइन एम स्टार उ प्लस सी आशा है कि आपने इस ट्यूटोरियल का आनंद उठाया और इसे लाभदायक समझा